पुल पर लम्बी सी सड़क दर्शायी गई है।

जगह का दृश्य है ।

नदी के दोनों सिरों पर ।

उसमें से एक युवती उन कुर्सी पे बैठे हुए अपने बाल खोले हुए --

इसका नाम नारायणी होमियो चिकित्सालय है।

यह एक हरित गृह का दृश्य है ।

एक इमारत के ऊपर हल्का-हल्का घास और पत्तियाँ दर्शायी गई हैं।

यह एक स्वचलित टेलर मशीन का दृश्य है ।

यह एक औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान का दृश्य है ।

इस छत को पूर्ण रूप से विकसित कर रहे हैं।

यह एक प्रदर्शनी का हॉल है ।

इस गाड़ी की बायीं तरफ एक व्यक्ति दर्शया गया है।

तथा उन जूनो के बीच में थोड़ा सा पानी एकत्रित दर्शाया गया है।

लंबा सा पोल दर्शाया गया है।

जिसके बहार बहुत सारी मोटर साइकिल तथा स्कूटी दर्शाई गई है |

सड़क के बाहर दो ठेले दर्शाए गए है।

दो लोग इस द्वार के भीतर जाते हुए दर्शाई गए हैं तथा इस द्वार से एक गाड़ी बाहर आती हुई दर्शाई गयी है |

पंडी जी क साथ कुछ रस्में कर रहे हैं।

एक महिला जो हाँथ में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए दर्शाई गई है।